यहाँ पर एक मैदान सा दिख रहा है। जिस पर कुछ हरियाली दिख रही है। छोटे -छोटे पत्थर दिख रहा दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ जमीन दिख रही है। जमीन के अन ऊपर देखें तो एक कांच का दरवाज़ा दिख रहा है जिस पर रेड व्हाइट और ग्रीन कलर से लिखा हुआ है।

में कर्टन लगे हुए हैं जो कि पर्पल व्हाइट और ब्राउन कलर के हैं। सामने में एक बैनर लगा हुआ है जिस पर किसी की तस्वीर बनी हुई है। ऊपर में कुछ उर्दू में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे एक टेबल लगी हुई दिखी। एक व्यक्ति खड़ा --

आस-पास मे कुंडिया है पेड़ नजर आ रहे है बोर्ड लगा हुआ है जो कि ऑरेंज और क्रीम कलर का है दुकान टाइप दिख रही है। एक वाटर कूलर रखा है जो कि व्हाइट और --

पत्थर सा लगा हुआ है। पीछे में पेड़ दिख रहे है। कुछ बाइक्स खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। वो बोर्ड लगे हुए नजर आ रहे है।

एक गोल्डन गोल्डन कलर का पीले- पीले कलर का कुछ दिख रहा है। दूर से पेड़ दिख रहे हैं। एक परिंदा उड़ता हुआ नजर आ रहा है। आसमान दिखाई दे रहा --

रास्ता दिख रहा है ऑर एक पुरानी दीवार दिख रही है| कच्ची -कच्ची सी सामने मे बहुत सारे से व्यक्ति खड़े हुए है| एक बिल्डिंग दिख रही है जिसमे खिड़किया नजर आ रही है व्हाइट कलर कि बिल्डिंग है और उसपर --

इस पिक्चर में एक टेबल लगी हुई है टेबल के आस-पास ब्लैक कलर की और येलो कलर की चेयर लगी हुई है ग्रीन और फिरोजी और ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है।

सामने में कांच दिख रहा है ऊपर में रडो का कुछ फर्नीचर बना हुआ दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर की वॉल दिख रही है और एक आइस क्रीम बना हुआ दिखाई दे रहा है।